ये एक लड़का खड़ा दिख रहा है।

यहां मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है।

और वहां बहोत सारे आदमी खड़े--